लाल कलर का पेंट मेनी गेट के ऊपर और सड़क दिखाई दे रहा है सड़क के किनारे पीले और केल कलर का पेंट है|

एक बड़ा सा खली जगा है और पाइप दिखई दे रहा है इसमें बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे है और ऊपर छोटे पत्ते दिखाए दे रहे है| और बड़े--

इस चित्र में एक बड़ा स्टेडियम है और इतना बड़ा सा सेट है और सारी चिड़िया है और बादल है और सड़क है और इसमें घास भी है।

यहाँ एक हंस का बोहोत ख़राब इसमें एक छोकरी भी है इसमें चार पिलर है और झाड़ भी है बादल भी है।

इस चित्र में तीन कौन शेप के ट्रायंगल है इसमें बहुत सारे रंग-बिरंगे फूल है और बहुत सारा सजा हुई लाइटिंग है और तांबा है और चार्ट भी--